ये रोड साइड खेत है जहां पे बहुत बड़े-बड़े घास उगे हुए हैं पानी है बहुत ज्यादा--

और छोटे पौधे बड़े पौधे बीच से जाने का रास्ता बनाया गया है।

बहोत सारे मशीने रखी हुई है वहां सचिन के फोटो लगे हुए है आईने हुआ है।

ये बहुत अच्छा सा व्यू है बीच में बहुत सारी तालाब बहुत सारी नदी जिसमें बहुत सारी मशीने लगी हुई एक बड़ा सा टावर है और जहां से बहुत अच्छा सा सनसेट व्यू दिख रहा है एक बहुत बड़ा शिप है जिसमें से ये व्यू देख सक --

ये एक दवाओं का दर्द का दुकान हैं जहां पे बहोत सारे रडे दिख बहोत सारे टूटे हुए राडो को बनाया हुए बॉक्स जैसा और बहोत सारे रडे राखी हुई हैं बहोत सारे रखा हुए हैं।

मुझे एक जिम है जहां पे बहुत से लोग है जो जिम कर रहे हैं बहुत सारी और बहुत लग रही है बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं काम में बैठ के--

एक रूम है जिसमें एक टीचर बैठ के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है और उसमें लाइट लगी हुई है पंखा लगा हुआ है बहुत सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ रहे हैं।

ये किंडर जॉय स्कूल है जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाना जूनियर स्कूल है बहोत सारे कार्टून दीवालों पर बना हुआ है बोर्ड लगा हुआ लाइटे लगी हुई है बहुत सारी बैचेंस है ठिक से सब बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे दीवालों पर की जिराफ है टाइगर है।

एक इनवर्टर मशीन जहां पे बहुत सारे बहुत सारे जनरेटर लगाए गए हैं बहोत सारे लाइट लग गया है मीट है जिसमें छोटे-छोटे बहुत सारे लाइट लगे हुए बहुत सारे--

और बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और वॉल थिंग बहुत ही अच्छा है कैमरा लगा हुआ है।

और बहुत सारे कर्टन डाले गए हुए हैं बहुत जगन कर्टन डाल के मिट्टी बहोत है।

एक दुकान जिसका नाम है आशु एक्सपोर्ट सर्कल यहां पर बेडशीट तौलि एवं मैक्सपोर्ट का कपड़ा तौल के भाव में मिल जाता है बहोत सारे पर्दे वरदे टंगे पंखा लगा हुआ आस पास बहोत सारे मीटर लगे हुए कैमरा लगा हुआ है।

वरी में बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं दुकान पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं छोटे-छोटे बॉक्सेस में सामान है पापड़ है बहुत सारे तूट पेस्ट है बहुत सारे घी का डिब्बा है शैंपूल है।

कोलगेट हैं ब्रश हैं बोरी है बहोत से लोग हैं दुकान के आसपास खड़े होके सामान ले रहे हैं।

दो-दो कॉर्नर पे एक बॉक्सेस में दो कंप्यूटर लगे हैं बहुत सारी चेयर्स लगी हुई बहुतसी कंप्यूटर पर अपना काम कर रहे हैं।